उसमें दो दरवाजे हैं और उसमे जो पोस्टर लगा है| लाल कलर का और हरे कलर का लगा है| उसमे बोहोत आने जाने वालो का आगमन है| बाहर बाइक भी खड़ी है।

ये है एक बिल्डिंग --

यह एक गंगाजी दिखाई दे रही है। गंगाजी के किनारे बोहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं। बोहोत बड़ी संख्या में आबादी है।